स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने यहाँ शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं जोकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाते है।

यह एक एयरपोर्ट है और यहाँ पे --

बच्चों का इलाज होता है। छोटे छोटे बच्चों का और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं जो की बच्चों का अच्छे से इलाज करते हैं।

और यहाँ पे यात्रियों को बैठने की भी बहुत बड़ी व्यवस्था रखी गयी है। यहाँ पे बहुत सारे यात्री सफर करने आते हैं बसों से।

बहुत अच्छे डॉक्टर है जो की लोगों का अच्छे से इलाज करते हैं और उनकी बिमारियों का निवारण करते हैं ।

और उनमे बहुत सारे कमरे होते हैं जिसमें की लोग रहते हैं और किराए पे यहाँ पे किराया देते हैं।